इस इमेज में देखिएगा यहां पर--

इस इमेज में देखिएगा एक पत्थरों का पहाड़ है और नीचे गुफा बनी हुई दिख रही है।

वहां देखिएगा दो व्यक्ति खड़े हैं।

जहां पर एक मरीज का ऑपरेशन चल रहा है यहां पर कई सारे डॉक्टर और नर्स भी --

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक बंगला दिखाई दे रहा है जहां पर गेट के पास --

और गमले में पौधे लगे हैं यहां पर कुछ घर भी दिखाई दे रहे है।

और जो बहुत ही सुंदर लग रही है।

यहां पर बड़ा सा बोर्ड भी लगा हुआ है और बाहर देखिएगा--

टेबल्स और कुर्सियां लगी हुई दिख रही हैं और बहुत सारे गमलो में पौधे लगे हुए --

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा है।

दिखाई दे रही है जो ऊपर पहाड़ की तरफ जा रही है और एक गेट भी दिख रहा है।

दुकाने भी नजर आ रही है और बाइक्स खड़ी हुई है।

साइड में देखिये कुछ बॉक्सेस भी दिखाई दे रहे हैं।

दर्शन करते हुए नजर आ रहे है।

दिखाई दे रहा है और ऊपर की तरफ देखिएगा काफी सारी लाइटों से सजा हुआ है जो बहोत ही --